इस तस्वीर में देखा जा सकता हैं कि एक जगह है जहां पर लोग कॉफी पीने के लिए जाते हैं बहुत सुंदर सी तस्वीरें लगी हुई है यहां पे।

इस इस तस्वीर में एक छोटा सा बालक पीली रंग की शर्ट और लाल रंग का पजामा और हरे रंग का--

इस तस्वीर में एक झूला है जहां पर बहुत सारे बच्चे झूलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

दो तोते बहुत ही रंग बिरंगे रूप के अपने घोसले में बैठे हैं।

यहां पे इंसान अगर रविवार को जाए अपने परिवार के साथ तो तनाव मुक्त हो सकता है।

आजकल पेट्रोल और डीजल के भाव बहुत बढ़ रहे हैं जो हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए।